यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसके किनारे पर कुछ सीढ़ियां बनी हुई है वह दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक स्कूल का गेट दिखाई दे रहा हैं।

झाड़ियाँ लगी हुई है ग्राउंड में जो दिखाई दे रही--

यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है गेट लगे हुआ है।

यहाँ पर कुछ साइकिले है की रिंग टंगी हुई है जो दिखाई दे रही है कुछ साइकिल के टायर --

यहाँ पर एक दुकान दिख रही है जिसके बाहर बलून्स लगे हुए हैं।